एमीम स्टूडेंट इन्फलुएंसर सेण्टर बहोत ही देखने में अच्छा लग रहा है। इसकी डिजाइनिंग बहोत अच्छी है।

ऐ उनियन बैंक है। जहाँ हम लोग पैसा निकलते है ऊपर शिसा लगा हुआ है देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है। बगल में बाइक और स्कूटी है और बगल में कैफे है जो देखने में बहोत अच्छा लग रहा है और सुन्दर है।

जो मूर्ति है जो म्मम एम्म शर्ट जींस पहने हुए अंदर इसके अंदर जाइये।

यहाँ टोटो का सेल लगा हुआ है। बैलून --

अमन ज्योति डेली सर्विस --

बहोत सारे यहाँ पे होत --